हमें देखने को मिल रहा है क्लाउड्स देखने को मिल रहा है प्लांट्स देखने को मिल रहा है।

पे है बाइक्स पे है यहां पर हमें साइकल्स दिख रहे हैं दो।

और ट्रेक्टर के व्हील्स दिख रहे है मुझे टंकी दिखा रही है इसमें होल दिख रहे है पीछे से इसमें ट्रीज दिख रहे है ।

इस पिक में मुझे दिखाई दे रहा कि इसमें हमे एक--

मंदिर जैसा दिख रहा है पिलर्स दिख रहे है पाथ दिख रहा है।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

इसमें एक कॉस्मेटिक शॉप वाला है यह जहाँ पर कॉस्मेटिक ज्वेलरी --

इस पिक में मुझे दिखाई दे रहा है की इसमें बहोत ही अच्छा ये चर्च में जब कोई मरता है ।

इसको इसी में लेते हैं ये एक वुडन का बना हुआ है। हमें स्टंप्स नजर आ रहे है।

एंड्री नजर आ रही हे पत्थर नजर आ रहे है लोग नजर आ रहे हे और लोगो के साथ--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

हमें यहां पर वाइट कलर की सीलिंग दिख रही है। हमें यहां पर--

आप यहां देख सकते हैं कि चेयर का कवर जो है ब्लैक है।

आप देख ले यहां पर हमें अम ऑफिस नजर आ रहा है यहां पर बहुत सारे लोग प्रेसेंट है यहां पर--

दिखाई दे रहा है इसमें हमे लीव्स दिख रहे हैं पॉट्स दिख रहे है उनमे रेड कलर के लीव्स है।

आप देख सकते हैं इस पिक में हमें नज़र आ रहा है कि इसमें--

डेकोरेट किया गया है यहाँ पर जो ये बंदा है इसको माला लगी हुई है ये मंदिर एक पंडित जी है।

इस पिक में हम देख रहे हैं कि इसमें बहोत सारे डिजाइन के ये बने हुए हैं।

इस पिक में हम देख रहे हैं कि इसमें यहां पर--

देखने को मिल रहा है। माइक्रोमैक्स सर्विस सेंटर जो कि मोबाइल नाम है इस बोर्ड पे जो कि रेड कलर का है।

अं ये कोन वाले लीव्स है यहां पर छोटे छोटे पोट्स मुझे पीछे नजर आ रहे हैं ये ग्रीन कलर का है।

बहोत ही अच्छा व्यवहाँरा है इसमें ये सेंड पे है ये तीन लड़के है इसमें पिलर्स है।

नजर आ रहा है यह पर हमें ट्रीज देखने को मिल रही है मून देखने को मिल रही है क्लाउड्स देखने को मिल रे है।

ये इतना बड़ा ग्राउंड है जहाँ पर हमें नेट भी देखने को मिल रही है यहाँ पर नेट से ही बंधा हुआ है इन्होने--

ऑरेंज कलर का दरवाजा है। व्हाइट कलर का फैन लगा हुआ है। यहां पर दो चार बंदे लेटे हुए हैं।

इस पिक में हमें एक फ्रिज देखने को मिल रहा है जो की बोहोत सारे पत्थर देख रहे है हम फ्रिज देख रहे है हम --